अच्छी लग रही है भागवान को लेकिन बहुत सुंदर लगता हैं नाओ भी बढ़िया लगता है ठीक हैअच्छी लग रही हैं।

यहाँ पे कार है बहुत पुराना कार कर रहा है यहाँ पे बहुत अनोखे कार है --

पनिया लगता है देखने में बहुत पनिया गहरा है --

यहाँ पे फुकना है देखने में अच्छा लगता है बहुत बढ़िया लगता है बहुत सुंदर लगता है हम को भी अच्छा लगता है फोटो फोटो फुकना है हरियर रंग की फुकना लाल रंग की फुकना बहुत बढ़िया लगता है देखने में बहुत अच्छी लगती है बढ़िया लगता है अच्छी लगती है देखने में सुंदर --